जोकि शटर बंद दिख रहा है एण्ड बॉल दिख रही है का बैनर दिख रहा है पीछे आसमान दिख रहा है।

एक ए_टी_एम दिख रहा है जहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे है उसमे एक कैमरा दिख रहा है ए_टी_एम मशीन दिख रही है एक बैग लेके खड़ा हुआ है एक आदमी।

एक हेयर शॉप की दुकान दिख रही है जिसमे एक बल्ब दिख रहा है बांस दिख रहे है केबलस दिख रहे हैं होल्डिंग लगी हुई है जिसमे--

नीचे फ्लोर दिख रहा है पीछे डिफरेंट कलर्स के कुछ कॉटन्स दिख रहे है एण्ड हैंगिंग रॉड दिख रहा है दीवाल दिख रही है लाइटिंग्स दिख रही हैं।

बुक्स की शॉप दिख रही है | काफ़ी सारी बुकस रखी हुवी है अंदर बाहर दोनों तरफ अलमारीस दिख रही हैं ।

एण्ड छोटी-छोटी घास दिख रही है।

बना हुआ है सामने उसका मेनू रखा हुआ है।

सामने कुछ साइकिलस रखी हुई है सामने से कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है सड़क दिख रहा है एंड सप्लाई की जाते हुए दिख रही है।

नीचे जमीन दिख रही है | पीछे की बाउंड्री वॉल दिख रही है | बाउंड्री वॉल के पीछे बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं | पेड़ के पीछे धुप निकली हुई है और आसमान दिख रहा है | पेड़ो को कलर किया गया है।

पंखे दिख रहे हैं | एल.ई.डी लाइट्स जलती हुई दिख रही है | छोटे बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं ।

पीछे आसमान दिख रहा है एण्ड सामने का जो घांस दिख रही हैं जो सामने मैदान है उसमें घांस दिख रही हैं और लाइट्स दिख रही हैं सामने जो घर है उसमें दरवाजे दिख रहे हैं और सूचनापटल दिख --